इस फोटो में सामने की साइड एक गेट और कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

फोटो में सामने की साइड छत पर कुछ लाइटे लगी दिखाई दे रहीं हैं।

और साइड में कुछ गद्दे भी लगे हुए हैं।

इस फोटो मे एक शानदार महल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

धरती पर कुछ लाल और नीले कलर का मैट बिछा हुआ है।

और कुछ बाइके के बाहर खड़ी हुई दिख रही है।

और काफी सारा पानी उछलता दिखाई दे रहा है यह पानी काफी तेजी से बह रहा है।

ये फूल पहले और भगवे कलर के दिखाई दे रहे हैं।

झोपड़ी के सामने चार लाल कलर की कुर्सियां बिछी है।

इस फोटो में सामने की साइड एक काले कलर की कार खड़ी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने की ओर एक बड़ा टैंक दिखाई दे रहा है।

सामने एक छोटा गेट भी लगा है।

इस फोटो में सामने की साइड कुछ पैदानों का ढेर दिखाई दे रहा है।